हमको इधर में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर एक इंसान दिखाई दे रहा है।

लड़का ने एक स्कार्फ पहना हुआ है वह भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक पंखा लटका हुआ है।

घर में मुझे दो लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर मोटरसाइकिल की शोरूम दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक छोटी सी बाल्टी भी दिखाई दे रही है।

मुझे आकाश भी दिखाई दे रही है।

मुझे काफी सारे पत्थर भी नजर आ रही है।

घर के बाहर मुझे एक कार डिखाई दे रहा है एक बाइसिकल दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर एक औरत दिखाई दे रहा है।

मुझे इडर एक मैदान में--

मुझे इधर एक दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे सूखी घास भी दिखाई दे रही है।

मुझे लकड़ी भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक नदी भी दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रही है।

अंदर मुझे एक स्टेज भी दिखाई दे रही है।

मुझे घर के पीछे काफी सारे--

सामने मुझे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे दुकान के बाहर छोटे छोटे बैग्स भी दिखाई दे रही हैं।

और ये आसपास मुझे दो लाइट बल्ब्स भी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे दो बच्चों के कपड़े भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर पत्थर से बने हुए दीवार भी दिखाई दे रही है।